बहुत सारी बाईके खड़ी हैं। अँधेरा बैंक का ए.टी.ऍम है एक्सिस बैंक है।

यह बस स्टैंड है। रात का समय है और सारी बसें खड़ी हैं।

बोहोत सारा लोग हैं जो बेठे हुए हैं। फूल बेच रहे हैं। कई तरह के फूल हैं गेंदे के फूल हैं आम के पत्ते हैं।

जमीन पे ढेर सारे लोहै के टूल्स पड़े हुए हैं बोल्ड वगैरा और लोहै की जाली वगैरा और बोहोत सारे औज़ार भी पड़े हुए हैं ये काम आते हैं कार वगैरा में।

बिलकुल यानी काम्पिटिशन हो रहा होगा।

दो बच्चे डांस कर रहे हैं। गेम्स --

ये बहुत बड़ी किताबों की दुकान है जहाँ पर चार लोग खरीदारी कर रहे हैं।

फोटु क्लिक करवा रहे हैं फोटु खींचा रहे हैं।

बहुत बड़ा बाजार है जहाँ बहुत सारी भीड़ लगी हुई है फूल है कईं तरह के --

यह खेलने का मैदान है बहुत सारे लोग गेम्स खेल रहे हैं दो बच्चे हैं वो भी अपने फोन में लगे हुए हैं गेम खेल रहे हैं।

बोहोत सारे बच्चे लड़के और लड़कियां मिल कर एक्सासाइज़ कर रहे है डांस सीखते हैं लोग यहाँ पर आके। ये एक डांस सिखाने की जगह है।